यहां दीवार पर पीले रंग का पेंट किया गया है।

यहां एक सफेद रंग की बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर नीले और लाल रंग के बलून लगे हुए है।

यहां पर कुछ औरतें दिख रही हैं।

यहां पर एक कूलर रखा हुआ है।

यहां एक पिक्चर दिख रही है यहां एक बड़ा हॉल दिख रहा है यहां पर कुछ लोग टेनिस खेल रहे हैं।

यहां एक आदमी सफेद रंग की शर्ट पेहने खड़ा हुआ हैं।

यहां एक आदमी काले रंग का लोवर और काली टी शर्ट पहने खड़ा हुआ है।

यहां पर दुकानों के बोर्ड लगे हैं।

यहां बिल्डिंग पर खिड़की दिखाई दे रहीं हैं।

यहां एक पिक्चर दिखाई दे रही है।

यहां पर लाल रंग की कैरट रखी हुई है।

इसमें पीले और नीले लंग के फूल बने हुए हैं।

यहां पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहां एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यहां एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ये एक फैक्ट्री की पिक्चर है।

यहां एक पिक्चर दिख रही हैं यह एक दुकान हैं यहां पर बहोत सारी बुक्स और कॉपी रखी हुईं हैं।

यहां पर एक नीले रंग का बड़ा स्टूल रखा हुआ हैं।

यहां एक पिक्चर दिख रही है।

यहां एक पक्चर दिख रही है यह एक शादी वाला एरिया है।

यहां पर पीले रंग का मंडप बना हुआ है।

यहां पर दो काले रंग की चम्मच रखी हुई हैं।

यहां पर एक चाबी रखी हुई है।

यहां एक पिक्चर दिख रही है यहां पर एक पहाड़ दिख रहा है।

इसका रंग सफेद है यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं यहां पर एक बाइक खड़ी हुई है।

यहां पर कुछ सीढ़ियां दिख रही हैं।

यहां एक पिक्चर दिख रही है यहां एक बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है।

रोड के किनारे कुछ छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं यहां आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक थाली रखी हुईं हैं।

यहां पर एक टोकनी रखी हुई है।

यहां पर दो पानी की कैन रखी हुई है।